और यहाँ पर क्या फ्रूइट्स भी दिखाई दे रहे है आम भी दिखाई दे रहे है अंगूर भी दिखाई दे रहे है केले भी दिखाई दे रहे है।

और साबुन भी दिख रही है और-और उम्म्म्म इस उम बहुत सारी डेटॉल साबुन दिख रही है और निरमा साबुन दिख रहे है और ऐ काटा भी दिख रहा है।

पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर कुछ रखने के वो जिम इम रखने का सामान भी दिखाई दे रहा है और--

-- और यहाँ पर लाइट फिटिंग भी हुई दिख रही है और यहाँ पर एक स्टैंड ए वो भी रखा हुआ है और मुझे यहाँ पर पड़े-पौधे भी बहुत सारे दिख रहे है और आसमान में मुझे ब्लू कलर या रेड कलर मम ब्लू और वाइट कलर का दिख--